और उसके ऊपर छतरी बनी है छतरी का कलर हरा है और इसमे स्टेशन का बोर्ड लगा है बोर्ड का कलर हरा है।